इसमें एक निक बेकर्स का बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड ब्लैक कलर का है और उसके नीचे बारीक बारीक कुछ लिखा हुआ है वो शॉप खुली हुई है शॉप के बाहर एक--